एक बहोत सी चीजें मिलती हैं इसमे --

और स्कूल जो है बहुत अच्छा है है और इसका एक पुलिस वाले व्यक्ति खड़े हैं स्कूल में एग्जाम हो रहा है और --

जो किसी कंपनी की एक मीटिंग ऑफिस होता है जिसमें कि एक सिमपट है एक बोर्ड है एक टेबल है चेयर है।

तीन साथ चेयर है जिसकी मीटिंग लेते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छी जो है ये तस्वीर है।